यह देखिए पतला संकरा रास्ता है इस पे नदी बह रही है।

नीचे देखिये थो छोटे-छोटे फ्लावर पोट भी है।

और देखिए यहाँ वाइट कलर और उम्म ग्रपेस कलर पेंट से किया हुआ है ।

पहाड़ और हरी-हरी घाँस है सामने देखिये चट्टाने हैं जो तीन लग रही हैं इधर भी छोटी छोटी |

और ये जो लोहे की बनी रहती है जिसमे सिक्स एंगल लगे रहते हैं वो मिटटी पे रखा जाता है ।

जैसे पूजा हुआ तो सब अपने-आप की सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं।

जिसपे देखिए बास्केट बॉल है।

और देखिये आदमी ऊपर से उतरता है और इधर स्लाइड करके बाहर आ जाता है।

और सब --